शीशे लगे हुए हैं और काफी बाहर अच्छी लाइटिंग भी की हुई हैं जो कि अच्छी दिख रही है।

और काफी लोग खड़े भी दिखा रहे हैं और बाहर फूल सी माला लगी हुई है और फूल वाली दुकान सी दिख रही है।

पाइप्स के साथ पीले रंग की संगल लगी हुई है और पाइप्स का कलर ग्रीन है।

यह एक हॉल दिखाई दे रहा हैं जिसमें काफी बैठने के लिए चेयर्स लगाई गईं हैं।

सिल्वर है और वाइट है दो गाड़िए एक साथ खड़ी हुई हैं और तीसरी गाड़ी दूसरी लाइन में खड़ी हुई है।

जोकि एक पेड़ को पकड़ कर खड़ा हुआ है और पास में एक पत्थर पड़े हुए हैं।

जो ग्रीन कलर और रेड और वाइट कलर का है और बाहर एक अच्छी पेंटिंग की हुई है पेंटिंग के ऊपर--

और ये पीछे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

घोड़े की पिक्चर पड़ी है और दीवार के ऊपर एक व्हाइट कलर का ए_सी लगा हुआ है और साइडों में दो--

दो लोग बैठे हुए हैं एक औरत है और एक आदमी बैठा है जोकि--

कुर्सी के ऊपर बैठे हुए हैं और पीछे दीवार के ऊपर भारतीय स्टेट बैंक का बोर्ड लगा हुआ है।

चेयर का कलर ब्लैक है और मेज का कलर भी ब्लैक है और पास में दो पिलर लगे हुए हैं।

ओर घर के बाहर एक व्हाइट कलर की गाड़ी खड़ी हुई है और पास में एक पानी वाला समुदंर सा लग रहा है और आस पास काफी--